यहाँ कुछ लाईट्स भी है यहाँ पर जालियों में रखी है मुर्गियाँ अलग-अलग बहुत अच्छे से रखे हुए दिख रहे है यहाँ पर--